यहाँ सामने एक दुकान हैं जहाँ सबसे ऊपर वीर बुक सेंटर लिखा गया हैं दुकान के छत के साथ --

सामने की तरफ एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है जिस पर कुछ बच्चे और लोग तैर रहे हैं साथ मे एक स्लाइडर भी लगा हुआ है। नदी के --

कुछ खिलौने वगैरह भी हैं और कुछ स्टेशनरी का समान भी है। साथ में दुकान के गेट के बाहर फोटो स्टेट भी रखा हुआ नजर आ रहा है। बाहर कुछ लोग भी हैं।